ये कहीं घूमने जाने टाइप की नाव है।

पीछे पहाड़ भी दिख रहे हैं और अच्छा मौसम है।

और काफी अच्छा मौसम है यहाँ का।

यह और ऊपर एक डिजिटल क्लॉक भी लगी हुई है।

और यहां पर कोई बीच में रेलिंग भी लगी हुई है।

यह फोटो एक ढाबे की है।

और बोर्ड के बाजू में एक पोस्टर चिपका हुआ है।

वहाँ पर अ नीचे एक के_एफ_सी की दुकान भी है और एक हेल्थ केयर की दुकान भी है।

और पास के पौधे सूख चुके हैं और आगे--

एक झरने के या तालाब के किनारे की लग रही है।

यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं इस साइड मुझे पास में एक पेड़ दिख रहा है।

साड़ी डिजाइन से लटकी हुई हैं।

स्टेज के बीच में दो मूर्ति रखी हुई हैं।

ये एक रिसेप्शन काउंटर की फोटो है।

पीछे कोने में एक नदी भी दिखाई पड़ रही है।

एक आदमी आगे खड़ा हुआ सिखा रहा है।

पार्क में गुलाब के फूल भी हैं।

ये फोटो एक बहुत बड़े मॉल की है।

और पीछे खाली मैदान खेत दिख रहा है।

कांच के अंदर दुकान का नाम लिखा हुआ है।

थोड़ा सफेद कलर का है और--

भारत का झंडा लहराया जा रहा है।

यह एक लाइब्रेरी के--

और पीछे बहुत सारी योगा मॅट लगी हुई हैं।

वहाँ पर एक पुतला भी खड़ा हुआ है हाथ जोड़े।

और फिलहाल ज्यादातर बसेस हैं।

मुझे फोटो में एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन दिख रहा है।